और बोहत ध्यान से सामने फादरी की तरफ देख रही है चर्च का जो पेंटिंग का दीवारों का कलर है वो सफेद और ग्रे कलर के मिश्रण से--

और हवा रोशनी का पूरा प्रबंध किया गया है क्लासरूम में हमको दो पंखे नजर आ रहे हैं।

ये जो मैं देख रही हूँ मेरे सामने चित्र है पेट्रोल पंप का पेट्रोल पंप में हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं ट्रक में भरवाते हैं।

हमारी जो गाड़ियां रहती हैं उनको भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए जो फ्यूल हमको पेट्रोल से मिलता है।

और गाड़ियां और मोटरसाइकिल वगै वगैरह ये सब आजकल पेट्रोल से ही चलती हैं पेट्रोल के बिना ये बिल्कुल भी नहीं चल सकती जब कि आजकल रिचार्ज

ऐसे ही हमें यह दृश्य नजर आ रहा है हम कुर्सी पर देख रहे हैं कि टोटल पांच कुर्सियां लगी हैं जिनमें से दो तीन पे वो --

और गेंदे का फूल ही बहोत ही प्यारे लग रहे हैं उन गेंदों के फूलों की माला ही भगवान को चढ़ाई जाती है गेंदे के फूल देखने में अच्छे भी लगते हैं।

ये देखने में हमें प्रॉन्स लगते हैं ये सी फूड में आते हैं इसको चाइना के लोग चाइना के या--

और पर हम लोगों को इसी सी फूड ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम लोग एशियन लोगोंको--

और बैठने के लिए बेंच भी लगा है साथ में और एक दुकान भी है यहां पर।

ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कोई यहां पर यात्री ट्रेन का सफर करके अपने घर पहुंचने आजाद चाहता है और कोई यहां पर अपने--

और पास जाने पे बहोत ही बड़ा होगा और इस पे गेट भी बहोत अच्छा लगा बना हुआ है।

वो यह फोटो अपने मोबाइल से सामने बैक कैमरा से खींच रहा है।

सेल्फी ले रहा है और हम पीछे देख सकते हैं अब जिम की--

साइकिल पे जो सीटें लगती है वो सीटें रखी हैं और बैठने के लिए कुर्सी है--

और भगवान के दर्शन करते ही उनकी आंखे तृप्त हो जाती है भगवान के अ आगे वो --

यह दुकान देखने में ज्यादा बड़ी तो नहीं है पर छोटी सी है और इसके बाहर गाड़ियां भी खड़ी हैं और इसके बगल में भी एक गेट लगा हुआ है।

ये जो चित्र है ये रेलवे स्टेशन का चित्र है। जहां पर परोग ये वेटिंग रूम का चित्र है। जहां पर लोग अपने या गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं।

और घोड़े के साथ में उसके साथ मलिक या उनके पापा बैठे होंगे या--

जो उस पंद्रह सोलह साल के बच्चे उन तक की साइकिल रखी हुई है। आप देख सकते हैं साइकिल के अलग-अलग डिजाइन अलग-अलग मॉडल यहां पर उपलब्ध है।

यहाँ पर साइकल आपको हर रंग में नजर आ जाएगी और साइकल पे रखें जाने वाले --

आप देख सकते हैं इस हॉस्पिटल का बहुत ही एटमॉस्फेयर हाई फाई है और बहुत अच्छे से इसका इंटीरियर भी किया गया है देखने में भी ये काफी विशाल काफी बड़ा अस्पताल लग रहा--

और ये चित्र बिल्डिंग में लगने वाले सब सामान का कोइ इस चित्र में कैप्चर किया गया है।